सामने दो कुर्सी रखी है जो ब्लैक कलर की है।

उसके बराबर में एक बोतल का फव्वारा रखा है।

इस ग्राउंड के चारों ओर जालीदार जाली लगी है जिस पर रेड और वाइट और ग्रे ग्रीन कलर का कलर हुआ है ग्राउंड में लाइटें लगी हुई है।

ग्राउंड की दीवार पर हल्का ग्रीन कलर हुआ है।

ग्राउंड में एक खंभे पर लाइट लगी है।

जिसपर बहुत सारे पत्ते लटके हुए है।

इस इमेज में विद्यार्थियों को परीक्षा देते हुए दिखाया गया है।

इक्षार्थी जिस कुर्सी पर बैठे है उसका कलर लाल है।

इसके बराबर में दो लड़के खड़े हुए हैं।

दो पहाड़ों के बीच से आ रहा है।

बाहर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

घर के सामने एक साइकिल खड़ी हुई है।

एक मिकी माउस है और एक सफेद टैंक है।

दुकान के बाहर एक ब्लैक कलर का पंखा रखा है।

इस इमेज में एक बॉडी बिल्डर का चित्र बना है।

नीचे एक ब्लू कलर का डब्बा रखा हुआ है।

की साइड में एक पेले कलर का डब्बा रखा है।

इससे पानी निकल रहा है बराबर में रेड कलर के फूल लगे हुए हैं।

एक बड़ा काउंटर है जिसके ऊपर एक लैपटॉप रखा हुआ है।